आप देख सकते हैं कि यहाँ पस एक ठो आदमी सोया हुआ है उसके आगे की तरफ मूर्ति है एक ठो।

और बहुत ही बिल्डिंग बना है खुटा खुटी लकड़-सकड़ हेन-तेन और बहुत उधर बादल दिख रहा है।

बच्चे लोग यहाँ पास कुछ चित्रकार कर रहे हैं बना रहे हैं कुछ गिफ्ट कुछ भी फुल वूल बना रहे हैं।